इसमें काफी अलग अलग वैरायटी दिखाई दे रही हैं सभी लोग अपने कपड़े खरीद रहे हैं।

फोटो है बाईकें हैं लाल रंग की एक --

मस्जिद है मंदिर है सब कुछ अलग अलग दिशाओ में दिया हुआ है।

उसे पेड़ों में ढका हुआ है साइड में एक खंभा है बिजली का--

ये पिक्चर एक होटल की है छोटा सा रेस्टोरेंट है जहां बहोत ही आरामदायक --

इस पिक्चर में बहोत ही सुंदर एक व्यू है जो खुले --

काफी सारी चीजें दिखाई दे रही है जैसे टेबल पे पड़ा हुआ गिलास ।

इस पिक्चर मे हमे दिखाई गया है एक बहोत सफेद रंग की सुन्दर बिल्डिंग जोकि शीशे से ढकी हुई है।

ये लाइब्रेरी की पिक्चर है यह मेरे पास काफी बार आ चुकी है जिसके बारे में मैं बात कर चुकी हूं बार बार कर चुकी हूं।

एक प्यारी सी केट्टल ये कोई डेयरी टाइप दिख रही है या फिर आइसक्रीम पार्लर --

इस पिक्चर में हमें एक पार्क दिखाई दे रहा है जिस पार्क में --

मिट्टी नीचे है बहोत गंदी दिख रही है।

इस पिक्चर मे हमे पत्ता गोभी--